यहाँ पर एक पुल बना हुआ है जिसके चारों तरफ लकड़ी के डंडे खड़े हुएं हैं। यहाँ पर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे दिखाई दे रहा। किनारे पर एक दुकान दिखाई दे रही है।

जिसमे बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे है जो काफ़ी एजेड हैं।